यहां पर एक घर जैसी दिखाई दे रहा है और जो जिसपर लगी हुई है और एक मंदिर जैसी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर काफी दूर दूर तक टाइल्स बिछी हुई है बड़ा स रोड दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है लोहे का है और एक ट्रक भी है।

सफेद कलर का ये घर जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़कियां लगी हुई है और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे काफी सारी वो यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां चल रही है।